inkscape प्रयोग करके create an a4 poster पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
* document की विशेषतायें बदलना
* a4 poster डिज़ाइन करना और
* poster को pdf में सेव करना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
* ubuntu लिनक्स 1204 os
* inkscape version 0484
अब inkscape खोलते हैं
file पर जाएँ new पर click करें
ये default canvas sizes हैं जो उपलब्ध हैं
मेरा canvas default रूप से a4 size में हैं
अतः मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूँगी
अगर यह आपकी machine पर ऐसा नहीं है तो a4 size चुनें
अब कुछ settings बदलते हैं
file पर जाएँ document properties पर click करें
एक dialog box खुलता है जहाँ हमें अनेक tabs और विकल्प मिल सकते हैं
अब एकएक करके उनको सीखते हैं
पहली टैब page में default units drop down सूची पर click करें
जैसे ही मैं एकएक करके click करती हूँ देखें कि ruler के unit बदलते हैं
अब मैं unit को pixels में रखती हूँ
background विकल्प background की पारदर्शिता और रंग को बदलने में मदद करता है
जब हम इस पर click करते हैं तो एक नया dialog box खुलता है
rgb sliders को बायीं और दायीं तरफ move करें
canvas पर background रंग को देखने के लिए alpha slider को दायीं तरफ move करें
rgb चुनी हुई rgb values के लिए पारदर्शिता बदलती है
देखें कि जैसे ही मैं move करती हूँ document properties window में background विकल्प पर रंग बदलता है
alpha slider को वापस सबसे बायीं तरफ लाती हूँ और dialog box को बंद करती हूँ
page size में हम अनेक विकल्पों को ढूँढते हैं
इन विकल्पों का प्रयोग करके हम canvas के size में भी बदलाव कर सकते हैं
जैसे ही मैं click करती हूँ canvas के size में बदलाव देखें
पेज का size a4 रखें
orientation को portrait या landscape में बदला जा सकता है
दोनों विकल्पों पर click करें और canvas पर बदलाव को देखें
हम width और height parameters प्रयोग करके canvas की चौड़ाई और ऊँचाई बदल सकते हैं
units drop down सूची पर click करें यहाँ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार units बदल सकते हैं
अब units को pixels में बदलते हैं
resize page to content विकल्प पर click करें
अनेक उपलब्ध विकल्प खुलते हैं
हम यहाँ सभी sides के लिए margins set कर सकते हैं
margins सेट करने के बाद किसी को भी resize page to drawing or selection button पर click करने की ज़रुरत है
अगला border विकल्प है हम यहाँ 3 checkbox विकल्पों को check सकते हैं
इन विकल्पों को देखने के लिए पहले मैं इस तरह से एक दीर्घवृत्त बनाती हूँ
पहला विकल्प पेज के border को प्रत्यक्ष बनाता है जोकि canvas का border है
इस विकल्प को अनक्लिक करें और देखें कि borders अदृश्य हो जाते हैं
फिर दोबारा विकल्प पर क्लिक करें और देखें कि borders फिर से दिखते हैं
दूसरा विकल्प drawing के ऊपरी हिस्से पर border sets करता है ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखे
एक बार फिर इस विकल्प पर क्लिक और अनक्लिक करें और देखें की canvas पर क्या होता है
तीसरा विकल्प दायीं तरफ और नीचे canvas की परछाई दिखाता है
ध्यान दें दायीं तरफ के और नीचे के border बाकि दो तरफ के border से मोटे हैं
तीसरे विकल्प को अनक्लिक करें और देखें कि यह परछाई अदृश्य हो जाती है
हम अपनी आवश्यकता और वरीयता के आधार पर ये सभी विकल्प प्रयोग कर सकते हैं
border color विकल्प हमें border के रंग को निश्चित करने देता है
अब border के default रंग को ऐसे ही छोड़ देते हैं
आगे guides टैब पर click करते हैं
guides canvas पर text और graphic objects को अलाइन करने में आपकी मदद करता है
आप यहाँ ruler guides बना सकते हैं
उर्ध्वाधर ruler पर click करें और guideline को खींचें
अब पहले विकल्प show guides को क्लिक और अनक्लिक करें
और देखें कि guideline canvas पर दिखते हैं और ग़ायब होते हैं
guide color guideline का रंग है
highlight color guideline का रंग है जब यह एक नियत स्थिति में खींचा जाता है
यहाँ guide और highlight के default रंग दिखाए गए हैं
आप अपनी वरीयता के आधार पर इसे बदल सकते हैं
मैं default रंगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे ये हैं
snap guides while dragging विकल्प खींचने के दौरान objects या bounding box को निकटतम guidelines पर snap करने के लिए मदद करता है
आगे grids टैब पर click करें
यह विकल्प प्रयोग करके हम grid प्राप्त कर सकते हैं जो canvas पर artwork यानी चित्रकला के पीछे दिखता है
grids canvas पर objects को स्थित करने के लिए मदद करता है लेकिन ये printed नहीं होते हैं
drop down सूची पर click करें
rectangular grid और axonometric grid दो तरह के उपलब्ध grids हैं
rectangular grid चुनें और new button पर click करें
तुरंत ही canvas background पर grid बनाया जाता है
उपलब्ध विकल्पों को प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार grid की विशेषताओं को set कर सकते हैं
हम निचले भाग में remove button पर क्लिक करके grid हटा सकते हैं
उसी तरह से आप axonometric grid के लिए भी विकल्पों का प्रयास कर सकते हैं
अगली 3 tabs के विकल्पों को इस श्रेणी में अग्रिम tutorials में बताया जायेगा
अब poster बनाना शुरू करते हैं
अतः पहले मैं दीर्घवृत्त और guideline को मिटाती हूँ
हमारे poster के लिए पहले हम background को डिज़ाइन करेंगे
rectangle tool पर click करें
एक बड़ा आयत बनाएं जो पूरे canvas को covers करता है
इसको हल्के नीले gradient से रंग करें
आगे कैनवास पर bezier tool प्रयोग करके
* ऊपर एक हैडर क्षेत्र बनाएं और * नीचे एक footer क्षेत्र बनाएं
हम इस पर नीला रंग करेंगे
अब हम spoken tutorial logo import करते हैं
* यह logo आपके लिए code files link पर दिया गया है
* अतः सबसे पहले tutorial को रोकें code files पर click करें और zip files download करें
* अब folder को अनज़िप करें और अपनी machine पर वरीयता प्राप्त location में इसे सेव करें
अब अपने inkscape document पर वापस आते हैं
file menu पर जाएँ import पर click करें
उस folder पर जाएँ जहाँ logo सेव किया गया है
spoken tutorial logo चुनें और open पर click करें
एक नया dialog box खुलता है ok पर click करें
अब अपने canvas पर logo imported किया जाता है
इसको 100×100 pixels resize करें
इसे header क्षेत्र के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित करें
अब spoken tutorial text type करें
इसे bold करें
text के font size को 48 करें
इसे logo के दायीं तरफ स्थित करें
इसके बाद partner with us help bridge the digital divide text type करें
font size को 20 करें
आगे कुछ text जोड़ते हैं
मैंने अपनी machine पर libreoffice writer document में sample text पहले ही सेव कर लिया है
यह sample text आपको code files में दिया गया है
इसे अपने सेव किये हुए folder में स्थित करें
अब मैं इसे copy करुँगी और अपने poster पर ख़ाली स्थान में इस text को paste करुँगी
font size बदल कर 28 करें
line spacing set करें
bullets बनाएं और प्रत्येक वाक्य से पहले स्थित करें
हम उसके नीचे 2 images जोड़ेंगे
पहले की तरह एकएक करके उन्हें import करें
मैंने उन्हें images folder में सेव किया है
ये images आपको code files में दी गयी हैं
इन्हें अपने सेव किये हुए folder में स्थित करें
images चुनें और उन्हें resize करें
उन्हें poster के नीचले क्षेत्र पर लाएं
अब हम कांटेक्ट विवरण footer क्षेत्र में लिखते हैं
एक बार फिर libreoffice writer document से text copy और paste करें
font size को 18 करें
अब हमारा poster तैयार है
आगे सीखते हैं कि इसे pdf format में कैसे सेव करते हैं
file पर जाएँ और save as पर click करें
एक dialog box खुलता है
वो folder चुनें जिसमें आप इसे सेव करना चाहते हैं
मैं desktop चुनूँगी
dialog box के नीचे दायीं तरफ dropdown सूची पर क्लिक करके format को pdf में बदलें
यहाँ name क्षेत्र में type करें spokentutorialposter pdf
फिर save button पर click करें
हमारा poster desktop में सेव होता है
अब अपने desktop पर जाते हैं और अपने poster को देखते हैं
अतः हमारे पास poster pdf format में है
इसको सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा
* document की विशेषतायें बदलना
* a4 poster को डिज़ाइन करना
* poster को pdf में सेव करना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
* spoken tutorial project के लिए एक a4 poster बनाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict द्वारा समर्थित है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
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं